बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं फोटो खींच रहे हैं जैसे की न्यू मैरिड पर्सन है और--

कुर्सी है टेबल्स चेयर कपाट मेकअप के समान दिख रहे है।